इसमें कांच की बड़ी बिल्डिंग दिख रही है।

थोड़ा सा पानी भी भरा हुआ दिख रहा है।

बकरीद तो सफेद और काले कलर की लग रही है।

इसमें दो बड़े सफेद कलर के बिल्डिंगें बने हुए हैं।

इसमें बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है।

बड़ी सी काले कलर की कार दिख रही है।

जिसमें दो आदमी बैठे हुए कुर्सी पर देख रहे --

साइड में दीवार पे डिजाइन भी है।

इसके ऊपर रेलिंग और लाइटें भी लगी हुई --

लोग भी उसके ऊपर बैठे हुए है।

पीछे ए पीले कलर की बस भी खड़ी हुई है।

पौधे भी इसमें लगे हुए हैं फूल भी दिख रहें --

जिसके अंदर बच्चे भी खड़े हुए दिख रहे है।

इसमें एक बड़ा सा मॉल दिख रहा है।

सफेद कलर की बिल्डिंग दिख रही है।

बड़ी सी पौधों की दुकान दिख रही है।